यह एक कोई कंपनी लग रहा है।

फूल सुख भी गया है लाइट भी जल रही है।

और बहोत सारी दुकान नजर आ रही है।

हाल में सोफा फ्रिज और टेबल रखे गए हैं।

नीच शाटर लगा हुआ हैं नीचे दरवाजा भी लोखन का रखा गया है और आगे पात्ररा लगा हुआ हैं कूलर भी है।

यहां पर बहोत सारे कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड रखा गया है।

अलग अलग कलरों में लाइटें जल रही हैं।